जैसा की अपन देख पा रहे है ये --

शॉप नजर आ रही है और यहाँ पे --

और यहां पे अपने को देखने में ऐं टीचर खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

पे नजर आ रही है और यहाँ पे एक --

और यहाँ पर बिल्डिंग के बाहर काफी सारे बिल्डिंग को बनाने वाली सेटिंगे नजर आ रही हैं।

और नीचे जैसे के अपन देख पा रहे नीचे रबर की कारपेट बिछी हुई नजर आ रही है।

अ नदी के ऊपर एक फूल नजर आ रहा है।